इसके सामने हमें एक महा विद्यालय का एक गेट नजर आ रहा है गेट अभी बंद है और यहाँ पर बहुत बड़े से पिलर खड़े हुए दिख रहे है और यहाँ पे अ अन्दर स्कूल बना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे है जो हरे हरे कलर के बहुत ही प्यारे लग रहे है।

पीछे बहुत सारी खेती की यारी नजर आ रही है बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और यहां पे गेट लगा हुआ है। गेट खुला हुआ है एक यहां पे हैडपम्प लगा हुआ नजर आ रहा है जिससे हम पानी निकालते है।

यहाँ पे एक बहोत ही बडा स्कूल है स्कूल में अभी कलर नहीं किया गया बस ईटे की दीवाल ओर प्लास्टर किया गया है स्कूल के बहार एक बहोत ही बडा --

हमे बहोत सारे खिड़किया नजर आ रही है एक बहोत ही बडा पेड़ लगा हुआ है स्कूल के जस्ट बाहर और यहाँ पे छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए दिख रहे है और गेट के बाहर एक दो तीन ईटे लगे हुए --

और यहाँ पर झरने का पानी डायरेक्टली नदी मे गिरते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पे पहाड़ काफी ऊंचाई पे बने हुए है।

सामने किला बना हुआ नजर आ रहा है जिसका कलर लाल किया गया है एक झंडा फेराता हुआ दिख रहा है यहा पे जो बहुत ही प्यारा --

ऊपर हमें चार स्टेचू नजर आ रहे हैं एक लड़के का कपड़ा पहनना हुआ एक बच्चे का कपड़ा पहनना हुआ गर्ल्स के कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं।

यहां पे एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है ग्राउंड के साइड में एक दो फ्लोर का घर बना हुआ दिख रहा है घर बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ऊपर टेरेस बंदी हुई नजर आ रही है यहां पर बहुत सारी खिड़कियां नजर आ रही है और मेन गेट दिखरा है।

है बहुत ही बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड में छोटे छोटे पौधे लगे हुए जो बहोत ही अच्छे लग रहे है मिट्टी का कलर इसमें लाल दिख छोटे छोटे अ पेड़ भी लगे --

लाइट जलती हुयी दिख रही है और यहाँ पर काफी लोगो की भीड़ है और यहाँ पे सीढ़िया बनी हुई है सीढ़िया पर एक गोल्डन कलर के रॉड लगे हुए है जो बहुत ही प्यारे लग रहे है बहुत सारी लाइट जलती हुई दिख रही है।